इसमें दवाइयें इत्यादि डाली जाएँगी फिर टमाटर की खेती होगी और और उसके बाद बाजार में जायेंगे --

यहाँ पर एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा हैं जिसके बाहर एक फोर व्हीलर और टू व्हीलर समस्त प्रकार की गाड़िया खड़ी हुई हैं जहाँ--